यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं यहाँ पर बुखार की खांसी की --

बगीचों के बीचो-बीच बड़ा सा अस्थ्म खड़ा हुआ है।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

तथा यहाँ पर कोल्ड्रिंक पेप्सी लिम्का तथा यहाँ पर अचार वगेरा सारी ही चीजे जो की रोजना यूज़ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक पार्क है यह पार्क एक वॉटर पार्क है।

यह मंदिर देख के मन को बहौत ही ज्यादा शांति का प्रतीत हो रहा है।

महिला ने अपने पैरो में जुराबे पहने हुए हैं ये दोनों तस्वीर खिंचवा रहे हैं।

सरीफा अमरुद ये सारे फल यहाँ पर देखने को मिल रहें हैं।

चारो और मिटियाँ ही मिटियाँ हैं मीटियों के बीच में थोड़े-थोड़े पत्ते गिरे हुए हैं।

यह पत्ते तुलसियों के पत्ते हैं यहाँ --

पहाड़ के नीचे भी काफी सारे पेड़ जमीन में है तथा पेड़ के आगे एक छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है।

मोटर साइकिल लगी हुई है और दोनों के ऊपर हेलमेट रखा हुआ है।